लड़की ने पिंक और ब्लू कलर का कुछ पहना हुआ है और एक लड़की ने व्हाइट कलर की टीशर्ट और ब्लू कलर का प्रिंटेड जींस पहना हुआ है।

ए एक जंगल जैसा है जहां पे बीच में से कुछ पानी जमा हुआ है।

और इस घर का कलर ग्रीन कलर का है इसपे भी एक बोर्ड चढ़ाया हुआ है।

रेड कलर की कुर्सियां ब्राउन कलर की टेबल है और वहां पे कुछ बंदे बैठे हुए हैं।

यहां पे सामने दो लड़कियां हैं उनके हाथ में सम्मा लिए हुए हैं ये।

ये एक सड़क पे एक टेंट जैसा दिया हुआ है पिंक और येलो कलर का।

जहां पे साइड में एक ब्रिज बनाया हुआ है जो की बहुत लंबा ब्रिज दिख रहा है जो आयरन रॉडस पर खड़ा किया गया है।

यहाँ पे एक बंदा है सामने जो समंदर में एक पत्थर पर बैठा हुआ है।

बाजू में एक ऑरेंज कलर का धागा है और रेड कलर की हैट पहनी हुई है।

यहां पे पुरानी गाड़ी दिख रही है जो की पूरी खोल के है।

बीच में ग्रीन कलर के कुछ ट्रायंगल जैसे रखे हुए हैं और ऑरेंज कलर का एक भी है वहां पे।

और साइड में एक मकान दिख रहा जिसको व्हाइट कलर का किया हुआ है।

ये भी एक सड़क की फोटो है जहां पे कुछ बाइक और स्कूटी दिख रही है साइड में एक ड्रम दिख रहा है ग्रीन कलर का।

और वहां से साइलेड भी रखा है जैसे खीरा है प्याज है।

वहां दीवार पर दो मीटर लगे हुए दिख रहे हैं।

इस टेबल पर कैच अप की बोतल है मैनू है और भी कुछ है।

और वहां पर भी एक शॉप दिख रही है जहां पे प्लास्टिक आइटम स्टील आइटम सब कुछ बेचते हैं।

जहां पे दीवार पे कुछ आ रैके जैसा लगा हुआ है।

साइड में दीवार पे एक घड़ी लगी हुई है जिसपे तीन बजे हुए हैं।

जहाँ सड़क के साइड में कुछ पिलर बनाए हुए हैं।

वहां दरवाजे के ऊपर हिंदी में कुछ लिखा गया है और यहां वे लोग पूजा उजा करते हैं।

वाइट कलर की एक है ब्लैक कलर की एक है और ब्राउन कलर की एक गाय बैठी हुई है।